यहां पे फोटो म्म्म्म दिख रई है उम्म एक महिला फोन चलाती हुई दिख री है और उंम्म्म --

मंदिर दिख रहे मंदिर के फोटुआ दिख रहे और ये दो --

ताड़ दिख रहे है पेड़ पौधे दिख रहे खेतो मे पानी दिख रहा है।

ये जगह जगह पानी बह रखा है खेतों में।

ये एक सैलून की दुकान पर कटिंग कर रहा है।

मुमु मुझे कारे दिख रही है और ये पेंट दिख रहा है।

और यहा पे हम बंदर देख रहे हैं बंदर बैठे भी है और सो रहे भी है।

पेट पूरी दिखाई दे रहे पेट --

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा फाइटे दिखाई दे रही है और ये --

म मुझे यहां पर करें दिखाई दे रही है ब बाइक दिखाई दे रही हैं और एक लोग दिखाई दे रहे --